एक सफेद कलर का पेंट टूटा हुआ एक बड़ा सा पाया खड़ा हुआ है।

स्टेज बनी हुई है शिवजी का पोस्टर बना हुआ है और फूल माले चढ़े हुए हैं और यह जो लड़की लोग डांस कर रही है।

कपड़े का दुकान है जो सिल्क कपड़े मिलते हैं|

और बहुत सारे औरतों का स्टेचू बना हुआ है और बाहर कुछ कारे गाड़ियां खड़ी हुई है रास्ता है जिसमें एक आदमी स्कूटी चला रहा है।